सामने एक फॉर्डिंग लगा हुआ है बंधन बैंक और बंधन बैंक ए.टी.एम. की एक छाता भी दिख रहा है ।

इस घर में बहोत सारे दरवाजे दिख रहे है खिड़कियाँ भी दिख रही है एक रेलिंग भी दिख रहा है ।

जानवर शेरनी है शेरनी बहुत ही गौर से देख रही है शेरनी --

इसमें बहुत सारे व्यक्ति देख रहे हैं सारे व्यक्ति पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं।